एक सेल्फ रखा है उस सेल्फ पर बहोत सारे--

सुधा पार्लर का दुकान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

यह मंदिर सफेद कलर का है।